यह एक शॉपिंग की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पर कुछ पुतले भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइटे भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ चुड़ियाँ भी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पे रोड भी दिखाई दे रहा है यहां पे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मकान भी दिखाई दे रहा है।